एक चार मंजिले ईमारते है नीचे सड़क पर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी चल रही है।

सड़क के किनारे चार मंजिला ईमारत है जिसमे चड़ने के लिए सीड़ियाँ बनाई हुई है।

पुरष अपनी मिरर में फ़ोटो खिछ रहा है और उसनें काले रंग की बनियान पहिनी हुई है।